विद्यालय के गेट के बाहर विद्यालय का नाम लिखा हुआ है जो की है श्रीमती रामरती देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ।

यहां पर कुछ बड़े पेड़ और कुछ छोटे पेड़ नजर आ रहे हैं।

उस जमीन पर कुछ पत्थर और मट्टी दिख रही है।

हमको यहां एक लोहे का बना हुआ उपकरण दिखाई दे रहा है।

विद्यालय के मेन मेन गेट के बाहर एक जनरेटर रखा हुआ है।

मंदिर के बाहर मैटि पर कई श्रद्धालु बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एन_सी_सी टीचर बच्चों से एन_सी_सी परेड करवा रहे--

होटल के ठीक बीच में ऊपर की ओर एयर कंडीशनर लगा हुआ है।

इस चित्र में एक गौशाला दिखाई दे रही है जो कि अभी निर्माणाधीन अवस्था में है।

यहां हमको एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है।

बार्बर एक व्यक्ति की दाढ़ी को सेट करते हुए नजर आ रहा है।

चित्र में बालोर घाट नाम का एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

चित्र में हमको एक बड़ा सा गोदाम दिखाई दे रहा है।

हाईवे के ठीक पार करके कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--

यहां कुछ मार्बल के पत्थर अंदर और बाहर रखे हुए हैं।